एक आदमी सामने से आ रहा है ब्ल्यू कलर का शर्ट पहने हुए।

बूढी औरत है कुछ लोग बस में चढ़ रहें है और कुछ लोग उम्म बस बस के पास खड़े हुए हैं।

ये फोटो में हमें व्हाइट कलर का पुता हुआ पूरी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारी फ्लावर्स लुटाए जा रहे हैं उनके ऊपर साउंड दिख रहा है ब्लैक कलर का।

इस चौराहे पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेड कलर की कार है।

यहां का सीन देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा है।

और ये नजारा देखने बहुत ही सुन्दर--

कि ये होटल बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है जो की ग्रे कलर का है।

और आदमी दो पहिया से जा रहे हैं व्हाइट कलर की गाड़ी है रेड कलर की पुती हुई दीवार है और कांच से बनी हुई बिल्डिंग है और--

वहां पे एक आदमी के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा है।

और देखने में भी यह थोड़ा अच्छा लग रहा है जब इसके अंदर जाएंगे इसके अंदर भी बहुत कुछ बना हुआ है।

ये फोटो रॉयल कैफे की है।